इस जगह पर ढलाई हो रही है । यह ढलाई पीलर एंवम बालू सीमेंट गिट्टी से बने जाते हैं । यहाँ पर बहुत सारे मिस्त्री हैं एंवम लेबर भी हैं यहाँ पर ढलाई कर रहे हैं ।

यह बिल्डिंग है यह बिल्डिंग काफी बड़ी है यह बिल्डिंग में बहुत ही सारे शीशे लगे हैं यह बिल्डिंग में अनेक प्रकार के कमरे रखें कमरे हैं यह कमरे में बहुत सारे खिड़कियां भी है एवं सेटअप बॉक्स लगाए गए हैं।

गराउन है इस गराउन में बहुत सारे खेत बनाये गए है यह खेतों में बहुत सुन्दर फ़सल लगाए गए है यहाँ पर किसान भाई अपने हाथो से ईशारा करके बहुत ही सुन्दर-सुन्दर फुल्लों पर ईशारा कर रहे--